पैसा है तो काम दाम वाले ज्यादा --

-- जैसे की आलू तो होगा आलू प्याज लस्सन। ।

-- और यह सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है दो तीन गाड़ियाँ खड़ी हुई है एक जा रही है एक रुकी हुई है।

और किसी को नाव से जाना है तो नाव से भी जा सकते है यहाँ पे नाव भी है।